इस फोटो में रोड पर चलता हुआ है। आदमी दिखाई दे रहे हैं और मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं । सामने जिओ वेलकम गेट पर जिओ का एक पोस्टर लगा हुआ है और एक नेता का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है ।

अ हरी शर्ट पहने हुए आदमी को अपना पैर पकड़ा रखा है उसके पैर को पकड़ कर ऊपर की तरफ कर रहा है ओर नीचे गार्डन जिसमें घास दिखाई दे रही है। झंड --

इस फोटो मे एक आदमी उलटा लेटा हुआ है अपने मुह को तकिये पे रखे हुए है कंधे पर टाउल ओर रजाई ओढ़ रखी है।

बंधन बैंक के का ब्रांच के सामने एक आदमी अपनी मोटर साइकिल पर हाथ रख के खड़ा हुआ है | बैंक के सामने दो मोटर साइकिल एक स्कूटी दिखाई दे रही हैं ।

पास में मोटरसाइकिल और दुकान जिस पर बोरियाँ रखी हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं। एम.आर.एफ. टायर का सिंबल भी दिख रहा है।

फोटो एक मेडिकल स्टोर का दिखाई दे रहा है जिस पर एक मोटा आदमी खड़ा है जिसके हाथ में चोट लगी हुई है और स्टोर के अंदर एक --